सोफे के आस पास दो सफेद रंग के बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं।

प्रार्थना कर रहे हैं इसमें एक--

पांच आदमी जो कि अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

यह एक योगा क्लास का चित्र है।

यह देहरादून की लीची है यह देहरादून में पाई जाती हैं।

जीसमें कोई पार्टी खत्म होने के बाद माहौल एकदम शांत लग रहा है।

और साथ में एक लकड़ी की बनी हुई टोकरी भी रखी हुई है।

जो किसी एक खास इमारत के आगे जिसकी दीवारें बाहर नीले रंग की नजर आ रही हैं उसके आगे खड़े हुए हैं।

जो कि फर्श लगा हुआ है।

और कुछ खिड़कियां भी नज़र आ रही हैं व साइड में एक काले रंग का पिलर जो कि बाहर लगाया गया है।

मशीन घर का लग रहा है जिसमें सामने एक मशीन फिट की हुई है।

का चित्र है जिसमें कुछ लड़कियां--

जिसमें से एक ने लाल रंग की पोशाक पेहनी है एक ने हरे रंग--

मेज के आसपास सफेद कलर की कुर्सियां भी रखी हुईं हैं।

कमरे की दीवारें भी जो है सफेद रंग की ही दिखाई दे रही है।

गौशाला का चित्र लग रहा है जिसमें--

एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की पोशाक पहनी है।

और मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं।

धार्मिक संत महात्मा बुद्ध का चित्र है।